proteins और macromolecules के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
* proteins data bank pdb से proteins के structures load करना
* pdb database से pdb files download करना
* proteins के secondary structure भिन्न formats में दिखाना
* hydrogen bonds और डाईसल्फाइड bonds highlight करना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको jmol application window से basic operations के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu os version 1204
* jmol version 1222
* java version 7
* mozilla firefox browser 220
बड़े बायोमॉलिक्यूल्स के structure का विश्लेषण जैसे
* proteins और मैक्रोमॉलिक्यूल्स
* nucleic acids dna और rna
* crystal structures और polymers jmol application प्रयोग करके किये जा सकते हैं
यहाँ मैंने एक नयी jmol window खोली है
बायोमॉलिक्यूल्स के 3d structures को database से सीधे download करके देखा जा सकता है
ऐसा करने के लिए file menu पर click करें नीचे get pdb पर जाएँ
एक input dialog box screen पर दिखता है
निश्चित protein के लिए हमें input box में चार letter का pdb code type करना है
यह code protein data bank pdb website से प्राप्त किया जा सकता है
यह protein data bank का web पेज है
यह बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी रखता है जैसे proteins और nucleic acids
उदाहरण: as pdb website से पैन्क्रीऐटिक enzyme insulin के लिए pdb code प्राप्त करने की कोशिश करते हैं
search box में protein का name human insulin type करें keyboard पर enter की दबाएं
अब प्रदर्शित वेबपेज पर नीचे जाएँ
pdb codes के साथ human human insulin के ज्ञात structures की सूची screen पर प्रदर्शित होती है
उदाहरण as code 4ex1 के साथ human human insulin select करते हैं
protein के name पर click करें
structure के विवरण के साथ एक window खुलती है
जानकारी जैसे
* primary citation primary citation
* मॉलिक्यूलर description molecular description और
* structure validationare structure validation इस वेबपेज पर उपलब्ध हैं
हम proteins के structures को pdb files में सेव कर सकते हैं और उनको jmol में 3d mode में देख सकते हैं
पेज के ऊपरी दायें कोने पर स्थित download files link पर click करें
drop down menu से pdb file gz विकल्प select करें
screen पर dialog box दिखता है
save file विकल्प select करें
ok button पर click करें
protein का structure 4ex1 pdb gz में downloads folder में सेव किया जायेगा
उसी प्रकार आप भिन्न proteins की अपेक्षित pdb files download कर सकते हैं और उनको अलग files में सेव कर सकते हैं
अब insulin के 3d structure को देखने के लिए jmol window पर जाते हैं
यदि आप internet से जुड़े हुए हैं तो आप jmol panel पर protein structure को सीधे download कर सकते हैं
text box में चार letter का pdb code 4ex1 type करें और ok button पर click करें
यदि आप internet से जुड़े हुए नहीं हैं तो tool bar पर open a file icon पर click करें
panel पर dialog box खुलता है
4ex1 pdb gz की location यानि downloads folder पर जाएँ
downloads folder select करें और open button पर click करें
4ex1 pdb gz file select करें और open button पर click करें
insulin का 3d structure screen पर खुलता है
panel पर protein का default display ball and stick है
panel पर protein का model hydrogen परमाणुओं से रहित दिखाया गया है
hydrogen परमाणुओं सहित model दिखाने के लिए modelkit menu खोलें
add hydrogens विकल्प तक नीचे जाएँ और इस पर click करें
अब panel पर model hydrogen परमाणुओं सहित दिखाया गया है
protein structure को जल अणुओं सहित भी दिखाया गया है
जल अणुओं को छिपाने के लिए दर्शायी steps का अनुसरण करें
पहले popअप menu खोलें और select पर जाएँ
submenu से hetero चुनें और all water विकल्प पर click करें
popअप menu फिर से खोलें style scheme पर जाएँ और cpk spacefill विकल्प पर click करें
यह सभी जल अणुओं को cpk spacefill display में बदल देगा
popअप menu फिर से खोलें style पर जाएँ नीचे atoms पर जाएँ और off विकल्प पर click करें
अब हमारे पास panel पर जल अणुओं रहित insulin structure है
आगे हम protein के secondary structure को भिन्न formats में दिखाना सीखते हैं
popअप menu खोलें
select विकल्प पर क्लिक करें
नीचे protein पर जाएँ और all विकल्प पर click करें
popअप menu दोबारा खोलें और नीचे style पर जाएँ फिर scheme पर
cpk spacefill ball and stick sticks wireframe cartoon trace आदि जैसे विकल्पों के साथ एक submenu खुलता है
submenu से cartoon विकल्प पर click करें
यह display protein के secondary structure जैसे helices random coils strands sheets आदि दर्शाता है
अधिक display विकल्पों के लिए
popअप menu खोलें और नीचे style पर जाएँ फिर structures पर
यहाँ हम protein के secondary structure को दर्शाने के और अधिक विकल्प देखते हैं
उदाहरण के लिए strands विकल्प पर click करें
अब panel पर protein strands की तरह दिखाया गया है
display का रंग बदलने के लिए popअप menu खोलें नीचे color पर जाएँ atoms select करें और blue विकल्प पर click करें
panel पर रंग में बदलाव देखें
structure को वापस ballandstick display में बदलने के लिए
popअप menu खोलें style select करें फिर scheme और ball and stick विकल्प पर click करें
हम protein model में hydrogen bonds और diसल्फाइड bonds को भी highlight कर सकते हैं
hydrogen bonds दिखाने के लिए: popअप menu खोलें और नीचे style पर जाएँ और फिर hydrogen bonds विकल्प पर जाएँ
popअप menu में hydrogen bonds विकल्प विशेषताएँ रखता है जैसे:
calculate set hydrogen bonds side chain
set hydrogen bonds in the backbone
hydrogen bonds को model में बदलने के लिए calculate विकल्प पर click करें
hydrogen bonds सफ़ेद और लाल लम्बे डैशेज़ की तरह दिखाए गए हैं
hydrogen bonds की मोटाई बदलने के लिए popअप menu से 010 a विकल्प पर click करें
अब panel पर हम मोटे hydrogen bonds देख सकते हैं
हम hydrogen bonds का रंग भी बदल सकते हैं
popअप menu में नीचे color पर जाएँ फिर hydrogen bonds पर फिर orange विकल्प पर click करें
panel पर हमारे पास सारे hydrogen bonds नारंगी रंग में हैं
डाईसल्फाइड bonds और sulphur परमाणु model में पीले रंग में दिखते हैं
डाईसल्फाइड bonds को रूपांतरित करने के लिए popअप menu में डाईसल्फाइड bonds विकल्प खोलें
उन विशेषताओं पर click करें जिन्हे आप बदलना चाहते हैं जैसे size और रंग आदि
उसी प्रकार भिन्न enzymes की pdb files को खोलने की कोशिश करें और उनके 3d structures देखें
अब सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न सीखा:
* protein data bank pdb से protein के structures load करना
* database से pdb files download करना
* pdb code प्रयोग करके insulin का 3d structure देखना
* जल अणुओं रहित protein structure देखना
* भिन्न formats में secondary structure दिखाना
* hydrogen bonds और डाईसल्फाइड bonds को highlight करना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
* pdb database से human hemoglobin की pdb file download करें
* cartoon cartoon display में secondary structure दिखाएँ
* protein के पोरफीरिंन porphyrin units को highlight करें
* pdb code के लिए निम्न link पर जाएँ
इस url पर उपलब्ध video देखें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
यह भारत सरकार के it it आर दी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद